ट्रीट है यह बेटमा में स्थित--

इस इमेज में मुझे एक बहोत बड़ा बिल्डिंग दिख--

ही बहोत ज्यादा बड़ा लग रहा है।

हुआ दिख रहा है यह देखने में बहोत ही--

है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट बैठ--

मुझे एक बहोत ज्यादा बड़ी होटल दिख रही--

कैफे नजर आ रहा है कैफे में एक बहुत।

मुझे एक बहोत बड़ा पेट्रोल पंप दिख--

हैं योगा कंलते हुए देखने में बहोत ज्यादा अच्छा लग--

बहोत बड़ा पहाड़ दिख रहा है।

मुझे एक कॉलेज की खिड़की दिख--

जिसमें बहोत ज्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग --

इमेज़ में मुझे एक बहोत--

बहोत ही ज्यादा बड़ी मशीन दिख--

बहोत ही ज्यादा सुंदर सा गार्डन दिख--

ये बहोत सारी टेबल और--

कुंआ नज़र आ रहा हैं यह एरिया बहोत ही --

ज्यादा बड़ी नजर आ रही हे और यह--